ये कोई डॉक्टर लग रहा है इसीलिए ये दवाइयां वगैरह दे रहा है इसके पास काफी भीड़ भी लगी पड़ी है साइड में दवाइयां वगैरह भी नजर आ रही है --